में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बहुत पुर पुरानी दिखाई दे रही है जंगल में ऐसा लग रहा कोई किला दिखायी दे रहा हो।

अह खम्बे नजर आ रहे हैं उनसे झंडा गड़े हुए नजर आ है। बहुत पुराने हम्म बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

कुछ टूटी फूटी दिवाले दिखाई दे रही है कुछ सीधी खड़ी हुई दिवाले दिखाई दे रही है कुछ घास फूस भी दिखाई दे रही है।

कवर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे महिलाएं दिखाई दे रही हैं यहां यहाँ बहुत सारे सामान सीटें रखी हुई कुर्सियां रखी हुई दिखाई दे रही हैं |

आसमान में ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। यहाँ दिखाई दे रहा है यहां बहोत दिखाई दे रहें --

बहोत क्यूट से बहोत प्यारे से हरे-भरे से हरी पत्ती लगी फूल फ्लावर गुलाबी लाल हरे पीले नीले सब प्रकार के फूल रखे हुए दिखाई दे रही --